बहोत ही सूंदर गोले टाइप में कुछ डिज़ाइन किया गया है।

और वो शेरनी बैठी हुई है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है इसमें।

स्टेचू के नीचे बोर्ड लगा हुआ है। उसपे कुछ लिखा गया है।

सामने विंडोज भी दिख रही हैं खिड़की --

और आगे एक लड़का दिखाई दे रहा है। एक अ थोड़ा सा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

ग्रिल दिखाई दे रहा है। ग्रिल में कुछ समाने रखी गई हैं। नीचे की बालकनी में ग्रिल नहीं लगा हुआ है।

यहां पे देखिए ये जो इमेज आप लोग के सामने शेयर किया गया है। ये ब्लैक वाइट इमेज है।

ये गोडाउन है काफी बड़ा गोडाउन दिख रहा है।

और एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है जिसमें रेड कलर का हेलीकॉप्टर है। जिसमें एक बच्चा येलो कलर का कपड़ा पहन के रेड कलर का पैंट पहन कर बैठा हुआ है। छोटा बच्चा है।

हम देख सकते हैं ये कुछ कार्यलय टाइप का है। यहां पे दो पुलिस अपने वर्दी में पहने अपने वर्दी पहन के खड़े हैं।